इस तस्वीर में हम एक क्लीनिक के वेटिंग रूम की फोटो देख रहे हैं।

रिसोर्ट के चारों तरफ हरे पेड़ दिख रहे है।

दीवार पर पेंटिंग लगी है यह एक होटल रूम के तस्वीर है।

यहां हम सामने ही देख सकते हैं एक लड़का ब्लू रंग का टी शर्ट पहने बैठा है।

जहां पर स्कूल के बच्चों की किताबें बेची जाती है।

यहां इस तस्वीर में हमें बहोत सारे हरे पेड़ दिख रहे है।